यहाँ पर आपको नदी नज़र आ जाएगी जिसके आजु-बाजु बहुत सारे घास देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारा कचड़ा देखने के लिए नजर आ जाएगा।